चित्र मे हमें तीन नव देखने को मिल रहा है यह नव काफी खूबसूरत है रंग बिरंगी और साजि धाजी है साथ ही साथ हमें दूर देखने पर कई बड़े बड़े बिल्डिंग देखने को मिल रहे हे।

कुछ आ रहे है तो कुछ जा रहे है। और दूर देखने पर हमें वड़े वड़े पेड़ नजर आ रहे है। और कूछ पोल भि नजर आ रहे--